साथ में पार्किंग एरिया में डस्टबिन जोकि ऑरेंज कलर का दिख रहा है।

यह एक बिल्डिंग है जहां ऊपर खिड़कियां नजर आ रही हैं।

के सामने होटल देव लिखा हुआ है।

यहां ढाबे पर लाइटिंग लगी हुई है।

सामने एक औरत बच्चे के साथ खड़ी हुई है और एक आदमी भी--